एल_सी_डी है पंखे लगे हुए हैं।

काफी सारे फ्रूट रखे हुए हैं।

जोकि जिसपे लिखा हुआ है अ विवो --

ये एक पहाड़ी एरिया है जिसमें दो हट बनी हुई है।

एक पेड़ पे चिड़िया बैठी है आस पास बड़े बड़े पेड़--

मशीन के पास एक डिब्बा है।